और एक आसपास एक पार्क सा दिख रहा है जिसपे और आसपास बृक्ष भी है और कुछ टेबल और चेयर भी रखी हुई हैं।

और वृक्ष हुए हैं।

फूलों की वाइट कलर की और पिंक कलर और कत्थई कलर की फूल है।

इस पिक्चर में एक जाली है लोहे की एक पैरट है येलो कलर का--

इस पिक्चर में एक हॉल है जहाँ पर कपड़ो की शॉप है यहाँ बहोत सारे कपड़े टंगे हुये हैं ।

और यहाँ पे कुछ लोग है जहाँ पर वाइट कलर का उम्म वाइट कलर की शर्ट और--

गाउन सा पहनते है वो पहने हुए है और गले में अ येलो से कलर का तौलिया डाले हुए है और एक ऊपर खड़े है।

दुकान दिख रही है जो लकड़ी की है और एक मैन गेट है और ऊपर किंग पार्क--